और आसपास घास लगी हुई है।

आ-आदमियों ने बनियाने पहनी है।

यहां एक सफेद रंग की बड़ी इमारत है।

और बड़े बड़े सारे पेड़ लगे हैं।

खूबसूरत से सोफे रखे हैं।

ये एक खिलौने की दुकान है।

बच्चों के खिलौने मिलते हैं।

लाल रंग की कुर्सियां रखी हुई हैं।

उन कुर्सियों पर बहुत सारे लोग बैठे हैं।

एक बहुत बड़ी सी सड़क दिख रही है।

मूर्तियों को साड़ी पहनाकर--

आस-पास अलमारियों में किताबें रखी गई हैं।

जहां कांच का दरवाजा लगा है।

बीच में एक लाल डब्बा रखा हुआ है।

और छोटे-छोटे से पौधे लगे हैं।

इस चित्र में तीन बड़ी-बड़ी सारी --

ये बस अड्डे की तस्वीर है।

वहां पर एक दुकान लगी है।

ये एक घर है।

ये चित्र में एक दुकान है।

उसके पास खाने पीने का काफी सामान है।

ये एयरपोर्ट का चित्र है।

इस चित्र में काले रंग की--

जिस पर काफी सारी गाड़ियां चल रही हैं।

बड़ा सारा पुल भी बना है।

ये चित्र में एक बहुत बड़ी मस्जिद है।

जिस पर काफी चादरें बिछी हुई हैं।

यहां एक इमारत के नीचे बहुत सारे आदमी खड़े हैं।